किले के दाईं और पीछे एक-दो मंजिला इमारत दिखाई गई है जिसका रंग सफ़ेद है।

खाँचो में दुकान का सामान लबा-लब भरा हुआ है।

बालिकाओं को विद्यालय का वस्त्र पहने दिखाया गया है जो की नीले रंग का है।

ता है व्यायामशाला के दीवारों का रंग स्लेटी है।

यह छाया चित्र दिन के समय का है ऊपर सफ़ेद आसमान नजर आ रहा है।

यह छायाचित्र दिन के समय का है।

इस चित्र के मध्य में एक पुरुष को संगीत वादन करते दिखाया गया है।

यह छाया चित्र दिन का है इसमें एक दो मंजिला इमारत को --

यह चित्र भोर के समय का है इसमें उगते हुए सूरज को दिखाया गया है।

यह छाया चित्र एक व्यायाम शाला का है इसमें व्यायाम शाला के उपकरणों को साफ-साफ देखा जा सकता है।

लकड़ी के खांचे के ऊपर देवियों की दो तस्वीर लगी हुई है।